एक बाइक भी खड़ी हुई है।

वहां देखीए आपको एक हाथ दिखाई दे रहा है।

ढाबे की बाउंड्री लाइटों से दिखाई दे रही है।

और गार्डन में बहोत सारी हरे कलर की ग्रीन कलर की चेयर भी रखी हुई है।

अलग प्रकार की मैरून कलर की छोटी बड़ी--

यहां पर ब्लू कलर के पर्दे भी लगे हुए हैं।

सामने देखी गई ये एक मैरिज होम है।

पेड़ में छुपा सूरज भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर पेंटिंग टंगी हुई है।

वाइट कलर का बोर्ड है।

बहोत सारे फैन धरे हुए है।

ब्लू कलर का पिंक कलर का--